इस तस्वीर में मुझे सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

और इस बिल्डिंग के आगे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और हरा भरा मैदान सब दिखाई दे रहा है और कुछ सड़क भी दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक टेनों कि छत दिखाई दे रही हैं जिसके आगे एक पोस्टर लगा हैं जिसपे नाम नाम भी लिखा हैं लालगढ़ बिहार।

पास में एक ट्रेन भी दिखाई दे रही है एक लो का पूल भी दिखाई दे रहा है एक पास में नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक बैंक दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो तस्वीर ले रहा है और इसके पीछे मुझे समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है।

भी दिखाई दे रहे हैं पास में कुछ दिखाई दे रहे हैं और लोहे का बना गेट दिखाई दे रहा है।

नल्लो की तस्वीरे दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है और सामने की तरफ कुछ स्टेज जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक --

और एक पंखा भी दिखाई दे रहा हैं।